बैनर में राज कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर लिख कर दिखाई दे रहा है।

ब्लू कलर का त्रिपाल भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमें।

पिक्चर में हम एक चर्च दिखाई दे रहा है घर के अंदर।

इस पिक्चर में हमें एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का।

लोहा से बनाने वाला फेंसिंग भी दिखाई दे रहा है।

घर भी नजर आ रहा है थोड़ा दूर में इस पिक्चर में हमें।

मूर्ति दिखाई दे रहा है क्रॉस में लटका के।

सामने में टेबल भी बहुत सारा दिखाई दे रहा है।

इंडिया का लोगो और सुंदर लिखकर भी दिखाई दे रहा है।

दुल्हन भी दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमें।

इस पिक्चर में हमें एक बर्फ जैसा व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है।

और दूर में घर भी दिखाई दे रहा है।

पानी के ऊपर मे एक राइनो दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमें रैनो के ऊपर में बच्चा उठ के नजर आ रहा है।

तस्वीर में हमें एक दुकान दिखाई दे रहा है।

टेबल का ऊपर में बहुत सारा समान रख के दिखाई दे रहा है।

इंसान का फेस पर ब्लर भी नजर आ रहा है।

मिट्टी में बहोत सारा ग्रीन ग्रास दिखाई दे रहा है।

बैंक का बाहर में बहुत सारा बाइक दिखाई दे रहा है।

सामने में बहुत सारे स्कूटी भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में हमें।

फ़िसिंग भी दिखाई दे रहा है कटा वाला--

पोस दिखाई दे रहा है पोस में इलेक्ट्रिक दिखाई दे रहा है।

सामने में एक टेंपल दिखाई दे रहा है घर में।

सामने में बहुत सारे घर दिखाई दे रहा है।

मिट्टी में बहोत सारा डस्टबिन नजर आ रहा है।

सामने में इंडिया फ्लैग भी नजर आ रहा है।

बहुत सारा सामान नजर आ रहा है इस घर के अंदर में।

नदी भी दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का पानी।

पत्थर का सामने में ग्रीन ग्रीन ग्रास लुक लोग दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमे नदी दिखाई दे रहा है।

नदी का ऊपर में हमें बहुत सारा नाव भी नजर आ रहा है।

रस्ता के किनारे में पत्थर भी दिखाई दे रहा है।

क्लासरूम का अंदर में बहुत सारा स्टूडेंट भी नजर आ रहा है।

ये दिन में एक हेलीकॉप्टर भी नज़र आ रहा है।

पिक्चर में हमने एक गार्डन जैसा जगह दिखाई दे रहा है।

घर में लाइट बल्ब जलती हुई भी नजर आ रहा है।

सीलिंग में लाइट बल्ब जलते हुए भी दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमें।

मिट्टी में बहोत सारा ग्रास दिखाई दे रहा है।